यहां शूटरों के ऊपर पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे है।

छे उम्म वॉइस नजर आ रहें हैं यहाँ परदा लगे हुए हैं उसके साइड दो पेड़ें खड़े हुए हैं जो हरे-भरे दिखाई दे रहें हैं निचे घास-फूस दिखाई दे रही है।

इमेज में एक स्टूल पर एक लेडीज़ और एक जेंट्स बैठे हुए है एक लेडीज़ के पैर में चप्पल नहीं है कुछ पॉलिथीन में रखे हुए है।

ये जो येलो कलर की है साइड में बहुत सारी फ्रोकें टंगी हुई दिखाई दे रही है नीचे टाइल्स लगी दिखाई दे रहे है और रैके पर बहुत सारा सामान रखा हुआ दिख रहा है यह नीचे अलमारियों में --